और कुछ पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी पड़ी हुई दिख रही है।

मुझे इस चित्र में हाथी का स्टैचू --

साइड में कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे--

हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और--

स्टेज पे एक व्यक्ति कुछ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है।

आर्मी पब्लिक स्कूल मोआ नामक का स्कूल दिखाई दे --

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसमें लिखा है जेरॉक्स फोटोकॉपी कलर प्रिंटिंग स्कूल प्रोजेक्ट आई_डी कार्ड्स एक्सेटरा ।

दे रहा है जिसके सामने दो--

रेड कलर के बोर्ड भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत प्यारा सनसेट भी दिखाइ दे रहा है।

मुझे इस चित्र में दुकान दिखाई दे--

रहा है और काफी सारा सामान भी--

मुझे इस चित्र में कार दिखाई--

मंदिर दिखाई दे रहा है।